केटच को कस्टमाइज अपनी इच्छा के अनुसार बनाना करने पर इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि कैसे:
एक lecture बनाएँ
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1110 पर केटच 171 इस्तेमाल कर रहे हैं
चलिए केटच खोलते हैं
ध्यान दें कि level 3 दर्शा रहा है
ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने केटच बंद किया था तब हम level 3 में थे
हम अब सीखेंगे कि एक नया lecture कैसे बनाएँ
यहाँ हम अक्षरों का एक नया समूह बनाएँगे जोकि teachers line में प्रदर्शित हो सकता है
मुख्य menu से file चुनें और edit lecture पर click करें
open lecture file dialog box प्रदर्शित होता है
अब create new lecture option चुनें और ok पर click करें
ktouch lecture editor dialog प्रदर्शित होता है
टाइटल field में a default lecture चुनें और मिटायें और type करें my new training lecture
level editor lecture का level प्रदर्शित करता है
level editor box के अंदर click करें
अब data of level 1 के अंदर इस level field में new characters में ampersand star और dollar चिह्नों को प्रविष्ट करें
हमने इन्हें केवल एक बार प्रविष्ट किया
ध्यान दें कि यह चिह्न level editor box की पहली line में प्रदर्शित हो रहे हैं
level data field में दर्शाए जा रहे text को पहले चुनें और मिटायें
ampersand star और dollar चिह्नों को पाँच बार प्रविष्ट करें
अब level editor box के अंदर plus चिह्न पर click करें क्या हुआ
level editor box में वर्णमाला से सम्मिलित एक दूसरी line प्रदर्शित होती है
level editor box में दूसरी line को चुनें
level field का data अब 2 प्रदर्शित कर रहा है
यह हमारे typing पाठ का दूसरा level होगा
new characters in this level field में fj प्रविष्ट करें
level data field में fj पाँच बार प्रविष्ट करें
अपने typing पाठ में आप को जितने की आवश्यकता है उतने levels बना सकते हैं
उसी प्रकार से अपने typing पाठ में आप जितने चाहे उतने levels बना सकते हैं
save icon पर click करें
save training lecture – ktouch dialog box प्रदर्शित होता है
name field में new training lecture प्रविष्ट करें
अब file के लिए एक format चुनें
filter drop down सूची में triangle पर click करें
files के format के लिए ktouch lecture files कोष्ठकों के अंदर star ktouch xml चुनें
यहाँ file सेव करने के desktop पर browse करें save पर click करें
ktouch lecture editor dialog box अब new training lecture name प्रदर्शित करता है
हमने दो levels के साथ एक नया training lecture बना लिया है!
ktouch lecture editor dialog box बंद करें
अब जो lecture हमने बनाया उसे खोलें
मुख्य menu से file चुनें और फिर open lecture पर click करें
select training lecture file dialog प्रदर्शित होता है
desktop पर browse करें और new training lecture ktouch xml चुनें
ध्यान दें कि &* और $चिह्न teachers line में प्रदर्शित हो रहे हैं चलिए typing शुरू करते हैं
हमने अपना खुद का lecture बनाया और उसे एक typing पाठ की तरह इस्तेमाल किया
केto typing पाठों में वापस जाने के लिए मुख्य menu से file चुनें open lecture पर click करें निम्न folder path को browse करें
root> usr> share> kde4> apps> ktouch और english ktouch xml चुनें
हम केटच को अपनी प्राथमिकता के अनुसार बना सकते हैं
उदाहरणस्वरुप जब आप एक अक्षर type करते हैं जो teachers line में नहीं प्रदर्शित है student line लालरंग में बदल जाती है
आप अलग प्रदर्शन के लिए रंगों को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं
अब colour settings बदलें
मुख्य menu से settings चुनें और configure – ktouch पर click करें
configure – ktouch dialog box प्रदर्शित होता है
configure – ktouch dialog box में color settings पर click करें
color settings विवरण प्रदर्शित होता है
use custom colour for typing line box को check करें
teachers line field में text field के आगे color box पर click करें
selectcolor dialog box प्रदर्शित होता है
selectcolor dialog box में green पर click करें ok पर click करें
configure – ktouch dialog box प्रदर्शित होता है apply पर click करें ok पर click करें
teachers line में अक्षर हरेरंग में बदल गये हैं
अब हम अपना खुद का keyboard बनाएँगे
एक नया keyboard बनाने के लिए हमें मौजूदा keyboard का इस्तेमाल करना होगा
इसमें बदलाव करें और इसे दूसरे name से सेव करें
मुख्य menu से file चुनें और edit keyboard layout पर click करें
open keyboard file dialog box प्रदर्शित होता है
open keyboard file dialog box में open a default keyboard चुनें
अब इस field के आगे वाले button पर click करें
keyboards की सूची प्रदर्शित होती है en keyboard xml चुनें ok पर click करें
ktouch keyboard editor dialog box प्रदर्शित होता है
keyboard टाइटल field में training keyboard प्रविष्ट करें
हमें keyboard के लिए एक भाषा चुनने की आवश्यकता है
language id drop down सूची में से en चुनें
मौजूदा keyboard में font बदलें
set keyboard font पर click करें
select font – ktouch dialog box window प्रदर्शित होती है
select font – ktouch dialog box में font के लिए ubuntu font style के लिए italics और size के लिए 11 चुनें
अब ok पर click करें
keyboard सेव करने के लिए save keyboard as पर click करें
save keyboard – ktouch dialog box प्रदर्शित होता है
निम्न folder path को browse करें
root> usr> share> kde4> apps> ktouch और english ktouch xml चुनें
name field में practice keyboard xml प्रविष्ट करें save पर click करें
file name keyboard xml format में सेव हो गयी है close पर click करें
क्या आप no keyboard तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं
आपको यह kdeedu mail आईडी पर mail करना होगा यह फिर केटच के अगले वर्ज़न में सम्मिलित होगा
इसी के साथ हम केटच पर इस tutorial के अंत में आ चुके हैं
इस tutorial में हमने प्रशिक्षण करने और colour settings में परिवर्तन करने के लिए एक lecture बनाना सीखा
हमने एक मौजूदा keyboard लेआउट को खोलना उसको बदलना और खुद का keyboard बनाना भी सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है
अपना खुद का board बनाएँ
keyboard में रंगों और font level में बदलाव करें परिणाम जाँचे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
spoken tutorial project team: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
आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद